कोचिंग सेंटर है।

होटल है बहुत बड़ा होटल है फैंसीइंग होटल है।

उधर भी एक पहाड़ी है पानी है बहुत बड़ा पोखरा है साफ पानी है।